ये इस फोटो में एक आदमी खड़ा हुआ है जो ए फोटो क्लिक करा रहा है और पीछे छोटा डैम बना हुआ है पानी का।

कुछ लोग यहाँ पे खड़े होके बुक्स खरीद रहै हैं अन्दर ओनर है जो दुकान वाले वो बुक्स दे रहै हैं निकाल करके।

ये एक लाइब्रेरी का फ़ोटो है जहां पर एक अंकल खड़े हुए हैं और वो हाथ में एक बुक लेकर के बुक का फ़ोटो दिखा रहे हैं और बोहोत टाइप के बुक रखे हुए है यहाँ --